एक रास्ता सीधा बना हुआ है और बगल में एक सीडी है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है।

इस फोटो में एक सीधा रास्ता बना हुआ है जोकि अंदर की ओर जा रहा है।

इस फोटो में एक बहुत ही बड़ा पंडाल बना हुआ है।

इस फोटो में एक व्यक्ति है जो कि एक बाइक पर बैठा हुआ है।

बहुत सारे करकट किनारे लाइन से पीछे हुए हैं और उनका ढेर बना हुआ है।

सूरज का रौशनी आ रहा है।

इस फोटो में एक बड़ा सा कमरा है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजे रखी हैं।

यहां प्लास्टिक नीले रंग के प्लास्टिक में कुछ चीजे रखी हुई हैं।

एक स्टीकर भी लगा हुआ है जो की पीले और काले रंग का है।

सामने बहुत सारे अलग अलग तरह की मशीनें लगी हुई हैं।

बगल में कुछ बैटरियां भी रैक के बगल में टांगी हुई है।

बहुत सारे नकली पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं।

बगल में एक घड़ी भी लगा हुआ है और एक पंखा भी लगा हुआ है।

पीछे एक बड़ा पेड़ है जोकि हरा रंग का है।

पीछे से सफेद लाइट आ रहा है आसमान सफेद हो रहा है।

पेपर पर कुछ लिखा गया है।

जिसके ऊपर ओवंस रखे हुए हैं और बगल में एक छोटा ए सी भी है और एक बड़ा ए सी भी है।

इस फोटो में एक कार है जो की सफेद है।

उनके पत्ते भी उसमें लगे हुए हैं।

उपर एक कैमरा भी लगा हुआ है।